आसपास में दिखाई दे रही खेत दिखाई दे रही है पास में एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रही एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसके नीचे की तरफ से दो खिडकी दिखाई दे रहे रेड कलर की दिखाई दे रही है।

फोन पे बाते करते हुआ दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहना हुआ है ऊपर की तरफ रेड कलर की कटा भी लगाए हुए है एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है जोकि बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे आसपास बलून दिखाई दे रहे बलून का कलर है रेड व्हाइट ब्लू कलर दिखाई दे रहे सामने एक चेयर दिखाई दे रहे जो रेड कलर की दिखाई दे रही है दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास बहुत सारे खिड़की दिखाई दे रही है। सामने की तरफ एक लड़की आती हुई दिखाई दे रही है। निचे की तरफ बहुत सारी गाडी दिखाई दे रही है। कोई साइड दिखाई दे रही है। कोई गॉगल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक शटर दिखाई दे रहा है। शटर का कलर दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के सामने एक बोर्ड दिखाई दे रही है। जिसका कलर बोर्ड का ब्लू दिखाई दे रहा।

रैक में कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है सामने एक अंकल दिखाई दे रहे है जिन्होंने व्हाईट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सामने एक टॉवल दिखाई दे रहा जिसके ऊपर दिखाई दे रही है मैगजीन्स के उपर लडके की फोटो बने हुए दिखाई दे रही साइड मे पेंट दिखाई दे रहा है ये दीवार पर लटका हुआ दिखाई दे रहा।